और एक टेबल भी दिखाई दे रही है एक साइड में भी आदी मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है और एक पर्चा छपा हुआ है।

पीछे चाय पड़ी है और यह लोग पी नहीं रहे हैं इनको चाय पीनी चाहिए गाइस आप लोग क्या कहते हैं इनको चाय पीनी चाहिए।

यहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर एक दुकान है एवं प्लास्टिक के नल है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ महिलाएं नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही है जो कुछ डांस कर रही हैं डांस करना --

लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए है।

मकान भी है जो दिखाई दे रहा है।

रेलवे की पटडियां तीन प्रकार की होती हैं जिन्हें मिटल लाइन छोटी लाइन और बड़ी लाइन कहते हैं अंग्रेजी में नैरो गेज भी कहते हैं।

यानी मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं हम इस गुना के चिन्ह को अंग्रेजी में सफेद कलर किया हुआ है रूम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बहुत ही बड़ी है।

एक फूल भी बना हुआ है इस पुल के नीचे एक नदी या फिर जल है आस पास में पेड़ पौधे भी काफी मात्रा में है।

बहोत ही अच्छा लग रहा है यहां पर एक दरी हैं।

इसे देखते रहते है देखने में मजा आता है बहुत ही अच्छा दृश्य है।

ऊपर की तरह हाईवे दिखाई दे रही है।